नमस्कार आपका स्वागत है आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एक इमेलemail स्क्रिप्ट बनाएँ विशेष रूप से जब आप एक यूज़र का एक वेबसाइट पर पंजीकरण कर रहे हैं
आप कैसे उन्हें इमेल भेजकर प्रमाणित करते हैं कि वह पंजीकृत हो चुके हैं मैं इसे कुछ हद तक एक स्क्रिप्ट बनाकर करूँगा एक send me an email स्क्रिप्ट
यह एक html फॉर्म में होगा जिसमें आप एक विषय और एक सूचना लिख सकते हैं और निर्दिष्ट किए एड्रेस पर भेज सकते हैं
अतः हम एक address वेरिएबल बनाएँगे
मैं यहाँ अपना hotmail एड्रेस टाइप करूँगा
आप देख सकते हैं जब मैं अपना वर्तमान hotmail पेज खोलता हूँ और inbox पर क्लिक करता हूँ यहाँ मेरे द्वारा कोई भी इमेल्सemails नहीं है
इस समय यहाँ कोई भी नये इमेल्सemails नहीं है
अतः यह एड्रेस है मेरे address वेरिएबल में मैं वेरिएबल को नया नाम to दूँगा
हम इसको भेजने के लिए mail फंक्शनfunction का इस्तेमाल करेंगे
हमारे पास प्रेषक और विषय यहाँ होगा
हमारे पास एक मानक subject होगा जो है email from phpacademy
अगला हमें एक html फॉर्म की आवश्यकता है जो जमा करेगा मैं एक खुद से जमा करने वाला बनाऊँगा
अतः चलिए यहाँ कुछ html कोड रखते हैं मेरे पास यहाँ एक फॉर्म होगा जो इस पेज में send me an email dot php के साथ जमा होगा
method post होगा
हम अपना फॉर्म यहाँ समाप्त करेंगे
यूज़र कुछ भी टाइप कर सकते हैं जो वे यहाँ विनिर्दिष्ट इमेल एड्रेस पर भेजना चाहते हैं
स्पष्ट रूप से आप इसे महत्व दे सकते हैं जब फॉर्म बना रहे हैं आप कह सकते हैं कि आप इस विशिष्ट एड्रेस पर भेजना चाहते हैं
send me an email स्क्रिप्ट केवल इतनी ही होगी ईमेलemail जिसे आप अपनी एक वेबसाइट में सम्मिलित करना चाहते हैं
अब हमारे पास एक text इनपुट होगा
यह मुझे ईमेल भेजने वाले व्यक्ति का नाम होगा
अतः आपके पास type text होगा जिसका नाम name है
हमारे पास अभी के लिए max length 20 के बराबर होगा
इसके नीचे हम टेक्स्ट की जगह बनाएँगे
अतः मैं textarea टाइप करूँगा और इसको इस प्रकार से समाप्त करूँगा
फिर हम इसे message नाम देंगे
हम एक पैराग्राफ की शुरुआत रखेंगे और यहाँ एक पैराग्राफ का अंत
और यहाँ नीचे हम एक submit बटन बनाएँगे जिसकी वेल्यू send के बराबर होगी
याsend me this ठीक है
अतः यदि आप हमारे पेज पर आते हैं और यहाँ इस पेज को चुनते हैं
यह नाम के लिए जगह है और यह सूचना के लिए जगह है
अतः मैं यहाँ name लिखूंगा और यहाँ message लिखूंगा
और अब यह काफी बेहतर दिख रहा है हमारे पास हमारा name बॉक्स है और message बॉक्स है
और जब हम इस बटन को क्लिक करते हैं ईमेलemail चला जाएगा
ठीक है तो सर्वप्रथम अपने php कोड के भीतर हमें जाँचना होगा कि submit बटन दबाया गया है या नहीं
इसके लिए यहाँ हमारे पास हमारा if स्टेटमेंटstatement कोष्ठकों में है और ब्लाक के लिए हमारे कर्ली कोष्ठक यदि कंडिशन सही है
कंडिशन इन कोष्ठकों के भीतर होगी
कंडिशन submit बटन का पोस्ट वेरिएबल होगा
जब तक submit बटन के पास एक वेल्यू है एक वर्तनी की गलती
अतः जब तक submit बटन दबाया गया है यह एक वेल्यू रखेगा और वह वेल्यू है send me this
इसका यह मतलब है कि फॉर्म जमा हो चुका है क्योंकि बटन दबाया जा चुका है
अतः इसके भीतर पहला कार्य हमें करना है कि हमें फॉर्म से डेटा प्राप्त करना है
और वह व्यक्ति का नाम है जो फॉर्म जमा करके ईमेलemail भेज रहा है
और उसका नाम इस फॉर्म में यहाँ पर है माफ़ कीजिये यहाँ name नामक फील्डfield में
साथ ही हमारे पास message है अतः हम आसानी से इस वेरिएबल संरचना की प्रतिलिपि बना सकते हैं और यहाँ अंदर यह message लिख सकते हैं
इसको जाँचने के लिए मैं लिखूँगा echo name
और मैं message को इसमें आगे जोड़ दूँगा
चलिए इसे जाँचते है यहाँ मैं टाइप करूँगा alex
और यहाँ मैं टाइप करूँगा hi there!
send me this पर क्लिक करिये और हमें alex और hi there! यहाँ मिल गया
ठीक है अतः हमें पता है कि फॉर्म डेटा सफलतापूर्वक जमा हो गया है
इस विडियो के अगले भाग में हम सीखेंगे कि कैसे इसे कैसे मान्य करें और अंत में इस मेलmail को यहाँ इस ईमेलआईडीemailid में विनिर्दिष्ट यूज़र को भेजेंगे
अतः मुझसे अगले भाग में मिलये अभी के लिए अलविदा
मैं रवि कुमार आईआईटी बॉम्बे की ओर से आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद